यहाँ पे पूजा हो रही है यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे है यहाँ पे बहुत सारे कलश बिठाये गए गए हैं सभी कलशो में --